कुछ अ लोग इधर उधर घूम रहे हैं धूप है पेड़ है।

पीछे मेट्स लगे हुए है लड़के ने ग्रे कलर का आउटफिट पेहना है।

जहां पे बहोत सारी बेंचिस लगी हुई है।

इसमें कुछ एक ट्री का चार्ट पेपर लगाया हुआ है तीन--

ग्रीन एक ब्राउन कलर की है वाइट कलर की है।

कोल्ड ड्रिंक सब मिलता है बाजू में दूसरी दुकान है उसका भी बोर्ड दिख रहा है थोड़ा थोड़ा--

बहोत सारे व्यू जैसा कुछ तो लग रहा--